के यहां पर एक बहोत बड़ा मॉल है।

उनको लॉक कर दिया गया है।

इस चित्र में हम ये देख सकते है कि--

पेड़ साड़ियां लगी है बैलून और--